और फिर सामने में एक कार दिख रहा है उसके बगल में और इसका जो कार का कलर ब्लू है।

बच्चा रेड कलर का टी शर्ट पहना है एक चप्पल पहना है।

एक घर है जो वाइट कलर का है।

और नहर पानी के ऊप्पर एक बोट भी रखा गया है जो बोट में एक टायर भी टांगा गया है।

सामने में एक स्टील का गार्ड लगाया गया है।

ये आई_आई_एफ_एल का है आई_एन का है फिर एक ड्रेस वाला यूनिफार्म का है।

सामने में एक साइकिल है जो पूरा ब्लैक कलर का है।

और यहां पे सादी कर में सब व्हाइट कलर ड्रेस पहन के आए हैं पीले--

एक क्रेटा गाड़ी खड़ा है जो की एक क्रेटा का कलर व्हाइट ब्लैक है।

एक आदमी खड़े हैं जो कि व्हाइट कलर की शर्ट पहने हैं।

उसके बगल में एक मिरर का गेट लगा गया है।

और ऊपर में लाइट कलर में है फिर दो खिड़की भी दिखाई पड़ रहा है।

सैलून का भी गेट कांच का है पूरा घर का कलर येलो है।

यह एक दृश्य जीसस क्राइस्ट प्रीस्ट का है।

और इसके बगल में एक आदमी मास्क पहने हुए है और ब्लू कलर के शर्ट।

यह एक दृश्य या बच्ची के गेम खेलने का है।

जोकि यहां बहुत सारे आ आदमी घूम रहे है सारा स्वेटर जैकेट पहनके।